अलग अलग तरीके की फल है जैसे कि अंगूर केला सेब संतरा अनार--

ती और फलों है जो कि लोग यहां से खरीदते हैं।

और इनकी प्रेक्टिस अच्छी तरीके से चल रही है और अच्छा प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से कर रहे--

यह एक छोटा सा मंदिर है जिसमें एक व्यक्ति ने अच्छे से पूजा कर रहे हैं और यह मंदिर कितना ही प्यारा लग रहा--